और एक लड़का है वो भी खड़ा हुआ है और फ्लोर नजर आ रहा --

तरफ भी कुछ ब्लू कलर का टास्क जैसा है जिसमें बच्चे लटक रहें हैं खेल रहें हैं। एक औरत है रेड कलर कि साड़ी पहन कर उसी तरफ जा रही है और फ्लोर नजर आ रहा है ग्रीन ग्रास हैं पोधे हैं पीछे मल्टी है।

रेड कलर के कार्पेट के ऊपर सारी मछलियाँ रखी हुई है एक खंभा नजर आ रहा है।